ये कोई दुकान है शॉप है शॉप का ऊपर बोर्ड लगाया शॉप के नाम का--

ये कोई फंक्शन हो रहा है शादी या पार्टी का कोई फंक्शन है और काफी सारे लोग हैं लेडीज हैं जेंस है और ऊपर लिखा हुआ है जी --

और सामने एक तो टेबल है टेबल के पास पोर्ट है।

यहां जो है काफी सारे बॉक्स हैं खाकी कलर के बॉक्सेस है जो कि फ्लिपकार्ड वगैरह से आते हैं और वही काम हो रहा है यहां पर--

अ बॉक्स पैकिंग और सामने दो लड़के लगे भी हुए हैं काम पे--

सामने एक गाड़ी है गाड़ी खड़ी है सफेद कलर की--